हरे अक्षरों में लिखा हुआ है एक बोर्ड लगा हुआ है सेंट्रल ऑफ़ बैंक इंडिया लिखा हुआ है नीचे काँच के गेट लगे हुए दिखाई दे रहे है काँच का गेट है बोर्ड लगा हुआ दिखा रहे है नीचे एक सामने रोड़ गया हुआ है बाइक दिखाई दे रही है दो बाइक रखी है।

प्लेटफार्म का नज़ारा है रेल मिलान दिखाई दे रही है प्लेटफार्म अच्छे से पता हुआ है इसमें सफेद और लाल कलर दिखाई दे रहा है।